फ्लोर जो सफेद रंग का है।

वह रास्ते में एक आदमी भी चल के आ रहा है।

यहां में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

सामान रखने वाला बॉक्स ओक्स बना कर बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

यहां मे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है।

दो ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और उसका पीछे मे ब्लू कलर का एक घर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

उस घर का बीच में जंगल भी दिखाई दे रहा है।

घर का पीछे में बनाना ट्री भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में स्नेक बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और लाल रंग का एक कुर्सी भी दिख रहा है।

का चोच लाल रंग का है।

बहुत सारा सामान भी रखे हैं टेबल के ऊपर में।

अंदर में चार टेबल हैं।